ये चित्र में हम तें कुछ नौनी छन दिखेण लगीं दिखेण सी यु स्कूल की नौनी छन लगणी।

या फणा भितर फणा हम तें और भी लोग छन दिखेण लग्यां जूं का ह-कपाल एंच हम ते कुछ पन्नी अर कुछ टोपला टापला छन दिखेण लग्यां दिखेण सी जु एक बड़ी फैक्ट्री छ लग्ण लगीं।

टाई टुकड़ी पैनी पैथर फणि हम ते एक बड़ी जगह छ दिखेण लगीं जु दिखेण से एक बड़ी फैक्ट्री छा लगणी।

ये चित्र मा हम तें एक गेट कर दिखेण लग्युं जै पर ग्रिल लगीं यफणा हम तें कुछ नौन नौनियाल छन दिखेण लग्यां।

जैका एंच एक कंप्यूटर रख्युं पैथर हम तें एक और नौनियाल दिखेण लग्युं जैन कालू कोट पैन्युं।

जु साड़िम छन आयीं और पणिम दुप्की छन लगणी पैथर फणा हमते कुछ केला का डालान दिख्याण लाग्यां।